यह एक होटल है यहां पर बहुत सारे कुर्सियां और मेज रखी हुई है जिन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इसके ऊपर एक चांद लगा हुआ है यहां पर बहुत सारे वुफर्स भी लगे हुए हैं।

यह एक पैलेस है यहां पर बहोत सुंदर सोफे पड़े हुए हैं उनके पीछे छोटे छोटे कुर्सियां रखी हुई है जिनके बीच में गोलमेज रखी हुई है।

इसके बराबर में बहुत सारे नमकीन के पैकेट्स भी टंगा रखे हैं पीछे की तरफ भी बहुत सारे पैकेट्स टंगा रखे हैं।

बोटल और पेपर्स में रखे हुए हैं यहां एक काले रंग की कुर्सी भी रखी हुई है यहां एक नर्स खड़ी हुई है।

यहां पर काला आसमान नजर आ रहा है यहां एक बड़ी सी सफेद रंग की लाइट्स भी लगा रखी है।

रहा है नीचे की तरफ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है वह भी कुछ काम कर रहा है यहां पर एक गत्ता भी--